ये चंपा राउ की वेडिंग की दुकान है और यहां पर बहुत सारे कपड़े--

और इसमें दो बड़े-बड़े केक भी है।

और कंप्यूटर है और उसके साइड में--

ये एक मंडली है और यहाँ पर ज्यादातर लोग --

है एक आदमी उनमें से कूलर खरीद रहा--

और इधर वाइट कलर के टाइल्स लगे हुए हैं।

यह एक नदी है और यहाँ पर टूटी हुई तीन --

और इसके साइड में बोहोत हरी-हरी गासे लगी हुई है।

इस सड़क पर बहोत सारे बाईके खडी हुई है।

चार आदमी भी खड़े हुए हैं और यहाँ पर आगे एक स्कूटी भी है।

ये एक मुर्गों की फैक्ट्री है जहां पर सफेद मुर्गे फर्टिलाइज कर के हैं।

इनमें से दो आलू बोहोत ही बड़े है और बाकी छोटे-छोटे आलू हैं।

ये एक हॉस्पिटल है जहां पर एक डॉक्टर एक छोटी सी लड़की की--

यह एक बर्थडे पार्टी है जिसमें छोटे कपड़े छोटे बच्चों का बर्थडे होता है।

एट् सेट्रा और यहाँ पर उनका मोबाइल फोन नंबर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर तीन लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं।

सॉफ्ट टॉय कार और भी बहोत सी चीजे हैं।

बैंक ए_टी_एम का है और यहाँ पर पाँच बाइकें हैं।

वो दौड़ रहे हैं यहाँ पर एक लाल कलर का झंडा भी लहराया हुआ --